यहां पर की दवाई अलग अलग प्रकार की मिलती है।

और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर नूर फैशन लिखा हुआ है।

यह यहां पर ब्लू कलर में कितनी सारी चेयर रखी हुई है है और ऊपर व्हाइट लाइट लगी हुई है।

सामने कितनी सारी कार दिखाई दे रही है जिनका कलर व्हाइट और बिलु और ग्रे कलर दिखाई दे रहा है यहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक लड़के ने अपनी टी-शर्ट को ऊपर उठा रखा है और यहां पर ब्लू कलर की इस लड़के ने पैंट पहन रखी है और पीछे एक पानी की बोतल रखी हुई है।

और यहां पर अह डस्टबिन दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है।

और यहां पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है।

ऊपर वन और थ्री लिखा हुआ है और ये साइड में सोफे दिखाई दे रही है।

यहां पर कितने सारे पेड़ पौधे दिखाई दे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

यहां पर कितने सारे गमले रखे हुए हैं।

ये यहां पर एक नदी भी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ये पूल बनाया गया है।

यहां पर कितने सारे ट्रैक्टर दिखाई दे रही है और यहां पर एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

और वाइट और इनके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

और सामने एक शेटर पे भी पानी की बोतल रखी हुई है।

यहां पर दो बलब भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कितने सारे लेडिस और जेंस बच्चों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

रंगबिरंगे पर्दे लगे हुए हैं और यहां पर व्हाइट दिखाई दिखाई दे रही है।

सामने एक पहाड़ी दिखाई दे रही है।

जिस पर ब्लैक कलर किया गया है और यहां पर लाइटें भी लगी हुई है।

सामने एक नदी दिखाई दे रही है।